शटर के नीचे कोई खड़ा हुआ है एक बाइक भी दिख रही है थोड़ी सी और यह बहुत बड़ी बिल्डिंग जैसे दिखाई दे रही है।

बहुत सेल्फी ले-- दी-- लेलो उसकी सेल्फी ली जा रही है नीचे टाइल्स लगी हुई है और बहुत सारे बैलून ऐसे भी पड़े हुए हैं और ये मतलब एक घर है जो--